की हे अगल बगल परदे खड़े हुए जिसपे घोड़े और हाथी बनाये गए है झंडे लगाए गए है जो हरे रंग की और नीले रंग की है उपर के साइड मे बोर्ड लगा हुआ है बहुत सारी फूल लगाए गए है और लाइट लगी हुई--

एक बड़ा सा घर है। जो सफ़ेद रंग का है। बो कत्ते रंग की दीवार है। नीचे साइड पे एक फर्ज का भूरे रंग का है। अगल बगल पेड़ पौधे जो हरे रंग की पत्तिया है।

एक आदमी खड़ा हुआ है। जो नीले रंग का कपड़ा पहना हुआ है। पेड़ का रंग भूरे रंग और हरे रंग की पत्तिया है। सफ़ेद और नीले रंग के आशमान है।

रूम मे बहुत सारे बाइके खड़ी हुई है। जो काले रंग की और नीले रंग की बाइक है। लाल रंग की बाइक खड़ी हुई नीचे की साइड पे टाट बिछा हुआ जो हरे रंग की है। यह अगल बगल दिवारे है। सफ़ेद रंग के ऊपर साइड पे छत सफ़ेद रंग का है। लाइट लगाए गई है सफ़ेद रंग की।

लाल और सफ़ेद रंग की बाइक खड़ी हुई है काले और लाल रंग की सीडी बनी हुई है काले रंग के सेट पे आदमी खड़ा हुआ है जो नीले रंग का टी शर्ट पहना हुआ हैं।

सामने की साइड दीवाल है पोस्टर लगाये गए है ये ऊपर की छत है जो सफ़ेद रंग की है फूल लगे गए है जो लाल रंग की है और सफ़ेद रंग की पर्दे है और नीचे साइड पे कुर्सी राखी गई है जो काले रंग--

अगल बगल पेड़ पौधे जो हरे रंग की पत्ती है सामने। एक लकड़ी रखी हुई है और फर्श है जो सफ़ेद रंग का है। सफेद और नीले रंग की आसमान--

और चावल राखी गई है जो पीले रंग की है सामनेकी तरफ बोतल रखे हुए है सफ़ेद रंग की स्प्रइट की बोतल है और एक छोटा सा बॉक्स रखा गया जो ऊसपे टिशू पेपर रखी हुई है।

साइट पे एक बडासा पर्दा बना हुआ है जो काथे रंग का है दो पोस्टर लगे हुए है।

एक बड़ा सा बिल्डिंग है सफ़ेद रंग की और अगल बगल घासे है हरे रंग के भूरे रंग के घासे है सामने से एक रोड गया हुआ है भूरे रंग की--

दो बड़ी बिल्डिंग है जो बहुत सारी खिड़किया है जिसमे काच लगा हुआ है बिल्डिंग का रंग सफ़ेद है और हलके काले रंग के है ऊपर के साइड पे दीवार का रंग सफ़ेद है पेड़-पौधे चरो तरफ लगाए गए है।

एक अगल बगल पेड़ लगाए गई है जो लोहे के बने हुए है सामने की साइड पे एक पर्दा खड़ा हुआ है जो सफ़ेद रंग की--